यह एक पार्क है यह पार्क में कटघरे लगे हुए हैं झुला लगे हुए है यह झुला पे बहुत सारे आदमी झूल रहे हैं ।

यह कचहरी में गमले में बहुत सारे पोधे लगे हुए हैं फूल लगे हुए हैं कचहरी के बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

आई.डी.आई. बैंक है यह बैंक में बहुत सारे लोग पैसे निकासी करने के लिए जमा करने के लिए बैंक में आते हैं खाते खुलवाते हैं यहाँ पे लोगो की काफी भीड़ लगी रहती है बैंक हम लोग सभी जाते हैं।

यह एक सैलून है यह सैलून में नाई बाल काट रहा है एक आदमी बाल कटाने के लिए यह सैलून में आए हुए हैं।